और सूरज की शेड आ रही है जो कि रेड कलर की है सफेद कलर का आसमान नजर आ रहा है ब्राउन कलर की मिट्टी नजर आ रही है।

एक कप एक बच्चों का कपड़ा काला है और दो बच्चों के कपड़ा येलो है ब्लैक कलर के शूज है।